दिख रही है। इसका कलर ब्लू है और वहाँ बॉटल भी दिख रहे हैं। यहां बॉटल का कलर ऑरेंज वाइट है।

ये एक पंछी है वो उमं पंछी पानी में दौड़ रहा है |

ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का कलर अ सिलवर्ड है और यहाँ दो आदमी हैं।

अ ब्लू हुआ है क्रीम चॉकलेट पर्पल बहोत सारी है।

यहाँ बहुत सारे ग्लास हैं और उसका कलर अ सिल्भर है।